कुछ पढ़ रही हैंया कुछ कर रही हैंऔर ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।

यहां पर एक बंगला नजर आ रहा है उसके पीछे बहुत ज्यादा सरसों--

यहां पर मुझे एक वर्कशॉप नजर आ रहा है जिसके आगे दो गाड़ी खड़ी है।

वगैरह पड़े हैं एक ब्लैक कलर की कुर्सी पड़ी हुई है एक ग्रे कलर की कुर्सी है।

और उसे यहां पर एक आदमी खड़ा जो उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने और ये बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा है।